यहां एक आदमी गाड़ी के बोनट को खोल के उसकी मरम्मत कर रहा है।

इसमें बीच में खाई की तरह नजर आ रहा है ऊपर भी कई डालियां लटक रही हैं।

और आगे सूखी मिट्टी और रेत दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लोग इसके ऊपर नजर आ रहे हैं।

यह किसी व्यायाम के कमरे का दृश्य है।

इनके पीछे बड़े-बड़े व्यायाम के उपकरण नजर आ रहे हैं।

और कई वृक्ष नजर आ रहे हैं और हरी-हरी घास भी है।

इसके अगल-बगल बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं इसके बगल में एक लंबी दीवार भी बनाई गई है।

सामने सूखा मैदान है और घर में एक दो खिड़की नजर आ रहा है बांस की सीढ़ी है।

इस दृश्य में तो एक मकान है मकान के बगल में बंद दुकान नजर आ रहा है।

उसमें कुछ सामान नजर आ रहा है एक आदमी भी अंदर है।

इसके अगल बगल सुखी घासपत्ती का नजर आ रही हैं।

इस दृश्य में पक्की सड़क पर एक काले और पीले रंग का टेंपो दिखाई दे रहा है उसके अगल-बगल।

उस तरफ एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

के सामने एक गोल गड्ढा है और उसके ऊपर एक लाल रंग का घर है बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं एक खंभा है।

इस दृश्य में तो बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है उसके ऊपर कई खंबों वाला एक पुल नजर आ रहा है।

उसके ऊपर से बहते हुए पानी साफ नजर आ रहे हैं ये झरने की तरह लग रहे हैं नीचे कई पेड़ नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य इंडियन ऑयल का है इसके नीचे चार खंभे लगे हैं इसके बगल में दो-तीन और इंडियन ऑयल के पंप दिखाई दे रहे हैं।

इसके सामने पक्की सड़क है सड़क पर एक आदमी स्कूटर पर जा रहा है दो-तीन वृक्ष नजर आ रहे हैं और बिजली के खंभे तार भी।

इस दृश्य में एक मैदान पर पेट्रोल पंप को दिखाया गया है इसके नीचे कई खंभे लगे हैं खंभों के नीचे बहुत सारी गाड़ियां और लोग भी जमा है।

इस दृश्य में एक कमरे में एक आदमी व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहा है वह एक बड़ी सी गेंद पर अपने पैरों को टिकाई।

इस दृश्य में एक मैदान है मैदान को चारों तरफ आधी दीवार से घेरा गया है।

एक आदमी स्कूटर पर आगे जाता हुआ नजर आ रहा है।

जिसमें एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है दुकान के अंदर जगह-जगह चौकोर डब्बों में।

इसके आगे लाल रंग की जाली भी लगी हुई है और इसमें कई बल्ब जल रहे हैं।

और कई लकड़ियां और चूलें भी नज़र आ रहे हैं।

इसके सामने एक लम्बा वृक्ष हैं बाइ तरफ एक पीले और हरे रंग का मकान दिखाई दे रहा हैं इसके बीच में एक गाडी खड़ी हैं और पीछे एक पेड़ हैं।

उसके सामने उसका बर्तन रखा हुआ है उसके पीछे एक दो जानवर और नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक बड़ा सा चट्टान है चट्टान पर झरने की तरह पानी नीचे की तरफ आ रहा है।

इस दृश्य में खंबू के ऊपर एक जलेदार छावनी की गई है।

के अगल बगल खम्बे और वृक्ष नज़र आ रहे हैं।

इसके ऊपर हरे टिन की छावनी की गई हैं बगल में टावर हैं हरे हरे वृक्ष नज़र आ रहे हैं बीच में गोल घेराव में पौधे लगे हैं।

सामने आधी दीवार है और उसमें फूलदार पेड़ लगा है।

दृश्य में एक सूखा मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में सूखे पत्ते नजर आ रहे हैं एक आदमी गड्ढा खोदकर पौधे लगा रहा है।

के पीछे आधी सफेद रंग की दीवार दिखाई दे रही है और एक आधा मकान नजर आ रहा है मकान में दो खिड़कियां हैं।

इस में सफेद और हरे रंग का एक मकान दिखाई दे रहा हैं मकान के आगे एक खम्बे भी बने हैं ऊपर छावनी भी की गई हैं।

बीच में दो हिस्सा किया गया है।

उसके बगल में पीले रंग की सीढ़ी लगी हुई है उसके चारों तरफ पीले रंग के लोहे से घिराव किया गया है।